चित्र मे एक बड़ी इमारत नज़र आ रही है इमारत पर बड़े बड़े अक्षरो मे बैनर लगा हुआ है।

सामने बड़े अक्षरों मे एक बैनर नज़र आ रहा है।

आजू बाजू कुछ लाईटे लगी हुई है सामने एक आदमी नज़र आ रहा है अगल बगल पेड़ लगे है।

चित्र मे एक इमारत नज़र आ रही है। उपर कुछ झंडे लगे हुए है। अगल बगल कुछ पेड़ नज़र आ रहे है। सामने कुछ लोग खड़े है।